यहां पर एक मंदिर है मंदिर में यहां पर दो लड़के जा रहे है नंगे पैर।

एक कप रखा हुआ है एक डिब्बी रखी हुई है।

यहां पर एक आदमी फोटो खेंच रहा है जिसके बाल ऊपर को खड़े हुए हैं चैन पैर रा है गले में।

यहां पर एक मकान है मकान में कुछ बल्लियां रखी हुई है लगी हुई है कुछ नीचे पड़ी हुई है।

कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ लेडिस खड़ी हुई हैं।

ऊपर सोलर पैनल लगी हुई है।

एक छोटी टेबल्स से बनाई गई है डिजाइनदार है पेंटिंग सी है।

एक लोटा रखा हुआ है एक भगोना रखा हुआ है।

नीचे कुछ अंगूठी रखी हुई है क्रीम है।

पीछे कुछ बैलून लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ खिलाड़िया है जिनमें कुछ जूते पहन रखे हैं।

यहां पर एक पुलिस चौकी है पीछे कुछ पेड़ पौधे से हैं कुछ कट्टे पड़े हुए है सिमट के।

कुछ लेडिस है कुछ जेंट्स खड़े हुए हैं।

यहां पर एक अंकल बैठे हुए हैं पीछे बुक स्टोर लिखा हुआ है यहां पर--